आदमी छपा हुआ है लेफ्ट साइड में।

व सात डिब्बे रखे हुए हैं डी_जे के।

यहां पर एक मोर है और साइड में पेड़ पौधे हैं।

यहां पर एक मशीन है।

इधर साइड में गत्ते रखे हुए हैं।

जो कि एक बच्चा पेड़ पर चढ़ रहा है।

बीच मे प्लेट रखी है व्हाइट कलर कि--

गाड़ी के पीछे नीले कलर की ग्रील है और रोड जा रहा है उसके पीछे दुकान है।

कपड़े टंगे हुए हैं रेड कलर में।

यहां पर अलग अलग रंग की लाइटे लगी हुई है।

यह एक रोड है रोड में गाड़ी जा रही है।

बड़े बड़े साइड में पेड़ लगे हुए हैं और एक गाड़ी खड़ी हुई है।